एक डॉक्टर है डॉक्टर के सामने पांच छे मरीज है।

डॉक्टर जो हैब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ हैएक स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है।

आधा बाल दिख रहा है और पिंक कलर का पहना वो भी दिख रहा है ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ है और उसके सामने एक वाइट कलर का बोर्ड --

और एक बिस्किट्स हैं जो कि कुछ टाटा नमक साल्ट हैं बटर बिस्कुट है और अन्य बिस्किट है।

और चारों साइड से लाइटिंग है बहुत ही अच्छा डेकोरेशन में है और एक टेबल व्हाइट कलर का है उसके एक ग्लव्स है व्हाइट कलर के ग्लव्स बहुत सारे रखे हुए हैं सामने प्लेट्स है वो भी उसका भी कलर व्हाइट कलरस का है।

एक व्हाइट आसमान दिख रहा है पूरा एक चट्टान है चट्टान के बीचों बीच पानी जा रहा है पर चट्टान का कलर पिला है।

और उसके उसी फील्ड के में एक टेंट लगा हुआ है और तीन छतरी हैं।

और लाइटिंग के अलावा भी बहोत सारे कुछ दिखाई दे रहे है।

और उसके सामने एक ब्लैक कलर का एक आदमी है जो की ब्लैक कलर का पैंट व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

जोकि रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है उसके सामने एक ब्लैक कलर का ड डब्बा है और उसके सामने एक ग्रीन कलर का बेंच लगा हुआ है।

एक आदमी है जिसके एक जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है और उसके गर्दन में ब्लूटूथ लगा हुआ है जिसकी उसका कलर रेड है।

और बगल में बहोत से छोटे-छोटे पौधे हैं बगल में एक वाइट कलर का बिल्डिंग है।

और उसके सामने ए_सी वाला कंडीशनर लगा हुआ है बॉक्स लगा हुआ है उसके सामने एक आदमी खड़ा है जोकि पीला कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और सारे आड़े पौधे छोटे पौधे बड़े पौधे सारे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से।

एक कमरा है और उस कमरे में बहुत सारे रंग-बिरंगे कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं।